सफेद रंग की है वहां एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नीला शर्ट और ग्रे पैंट डाली हुई है।

यह तस्वीर एक जगह की है जहां --

पानी की बॉटलें फीज की बॉटल विभिन्न तरीके की ज्यूस सोडा वगैरह रखा हुआ है।

तस्वीर है जहां पर लैपटॉप रखे हुए हैं आईपैड रखे हुए हैं।

तो वहां बोर्ड लगा हुआ है हरे रंग का जिसमें सफेद रंग की लिखावट है खिड़की बनी हुई है।

इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि यहां कोई फंक्शन होने वाला है।

कुर्सियां लगी हुई है टेबल जो है वो गोल आकार का है।

व्यक्ति हैं उन्होंने नीले रंग का कमीज पहना है सफेद चौकड़ी वाला--

यह समंदर या नदी नजर आ रही है।

चार बच्चे नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं तबला बजा रहे हैं और ऊपर बच्चे अलग बैठे हुए हैं कुर्सी पर।

एक बोर्ड लगा है वहां पर लिखा है द्रोणाचार्या।

पे गाड़ियां खड़ी हुई है सोना है तो जाग जाए वो सबका बैनर लगा हुआ है।

र की रेपी लगी हुई है लाल रंग में बैनर लगा --

दो तकिए रखे हुए हैं कुर्सियां रखी हुई लाल रंग की दो बैग रखे हुए काले रंग के --

यहां कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क ल नजर आ रहा है चल रहा है। यहां पे कुछ व्यक्ति है जो अपना काम कर रहे हैं --

यह तस्वीर किसी मॉल की या दुकान की नजर आ रही है जिसमें सामान रखा हुआ--

कीमत के टैग लगे हुए तो कोई व वस्तु पर दो सौ निन्यानवे लिखा है किसी पर तीन सौ निन्यानवे लिखा है।

ये जो वस्तुएं है इनका पैकेट हरा गुलाबी नीला पीला रंग का नजर आ रहा--

वरना उस दुकान में दो व्यक्ति नजर आ रहा है जो खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं।

लाल रंग में बैनर लगा हुआ है वहां पर नंबर लिखा हुआ ---

यह तस्वीर एक जिम की है जहां पर एक व्यक्ति ट्रेडमिल पर जिम कर रहा है।

यहां महिंद्रा कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है यह कोई शॉप नजर आ रही है जिसके बाहर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं।

तो बोर्ड लगा हुआ है लाल रंगा लिखावट है महिंद्रा सफेद रंग में।

बैनर लगा हुआ है एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

यह तस्वीर में कुछ बच्चे लड़के नजर आ रहे हैं जिन्होंने --

अच्छा काम का है आधा और आधा सफेद रंग में पक्का काम का है।

ये तस्वीर मेमोरी सीनरी है जहां पर झाड़ है पहाड़ है आसमान है।